जिसमें बहुत सारी कुर्सियां डली हुई हैं कुर्सियों का रंग काला है।

जिनमें से एक लड़के ने ब्लू जींस पहन रखी है तथा एक लड़के ने जूते भी पहने हुए हैं।